जो पीला कलर का है और बस का नंबर है सी_जी पंद्रह ए_बी ज़ीरो पांच छः चार ये बस का नंबर है और इसमें बैठ कर के बच्चे स्कूल जाते है और स्कूल से घर आते हैं।

यहाँ जीम का कुछ मशीन दिखाई दे रहा हैं।

यहाँ एक घर बना हुआ है जो पलस्तर नहीं हुआ है और एक बड़ा सा गेट है बहुत बड़ा जिसमें ताला लगा हुआ है और दो व्यक्ति बैठे हुए है जिसमें से एक व्यक्ति फ़ोन में बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ हैं।

यहाँ मुझे बहुत सुन्दर एक गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के फूल लगाए हुए है जो बहुत सुन्दर दिख रहा है बहुत सारे फूल-पौधे लगे हुए हैं।

चर्च या फिर गिरजाघर घर जैसा लग रहा है और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हो कर के तिरंगे झंडे के सामने हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे है यह छब्बीस जनवरी या फिर पन्द्रह अगस्त का महौल मुझे लग रहा हैं।